यह एक किराने की शॉप है जहाँ पर किराने का समान मिलता है और यहाँ पे लकड़ी का शोकेस है जिसके अंदर सब समान रखा हुआ हैं।

ऊपर अंडे की क्रेट रखी है तीन और साइड क्रैक्स चिप्स ये सब टंगे हुए है और डब्बों मे टॉफ़ी चॉकलेट्स रखी है और साइड में कंप्यूटर रखा है।

कुछ लोग चर्च के बाहर खड़े हुए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं जिसमें कुछ लेडिज है बच्चे हैं और जेंट्स और बुड्ढे भी है एक बुड्ढे अंकल के हाथ में लाल कलर की थैली --